ए एक डैम हे।

ए पौधा में और मस्त पानी देत हे फिर ताजा हे ए ज़ग मस्त दिखही भी --

और मस्त कपड़ा मन हे एदे माल मे अऊ दिखत भी हे मस्त मस्त कपड़ा मन ए शोभा